बच्चे के आसपास में और भी बहुत सारे बकरियां है।

इस फोटो पर एक सैलून का इंटीरियर को दिखाया गया है।

ऊपर बहुत सारी एल्युमिनियम्स दिख रहा है।

लेफ्ट साइड पे कुछ विंडो के लिए एल्यूमिनियम बनाया गया है ये भी दिख रहा है।

सामने टी_वी भी दिखाई दे रहा है सोफा के ठीक स्ट्रेट पर।

रात में भी कस्टमर फ्रेंडली काफी सारे वैरायटी आफ लाइंस दिख रहा है।

और इसके बगीचे भी बहुत साफ है।

बिल्डिंग एक सिंगल स्टोरी ग्राउंड फ्लोर है और जिसका रेट है जो काफी डस्टिंग लग रहा है।

रोड कच्चा पक्का मिक्स लग रहा है।

इस फोटो को देख के लग रहा है कि ये कोई स्कूल का फोटो होगा।

रोड पर कार्स चल रहा है एक वाइट और येलो ऑरेंज कलर की कार सामने जा रहा है।

राइट साइड में एक बड़ी स्लाइड दिख रही है जहां बच्चे खेल रहे हैं।

जो एक सेमी अर्बन या रूरल एरिया में सिचुएटेड लग रहा है।

इस तस्वीर को देखकर लग रहा है कि यह कोई बैंक है।

यहां बहुत सारे आइटम्स के फ्रूट्स दिख रहा है।

उसमें से कुछ बनाना कीवी और एप्पलस भी दिख रहे हैं।